यहां पर एक किला दिख रहा है जहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है वह पर कुछ पेड़ दिख रहा है वह पर दो खंभे दिख रहा हे वह पे बिजली की तारे लटकती नजर आ रही हे।

साइड मे एक पत्थर की मूर्ति नजर आ रही है पीछे की ओर एक दीवार नजर आ रही है उसके उपर गोल-गोल कुछ छिद्र बना गया है आगे की तरफ एक सिवलीन पड़ी है नीचे एक टेबल पड़ी है।

यहा पर कुछ काम चालू है --

यहा पर बहुत सारे लोग दिख रहे हे जहा बहुत सारी रोसनी नजर रही है ऊपर की तरफ से सीडिया दिख रही हे वह पर एक बड़ा सा मोल दिखाई दे रहे हे बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं। वह एक बड़ा सा --

वहां पर और एक बाकेट और एक स्टूल दिखाई दे रहा है। वहां पर कुछ बॉक्सेस रखी हुई हैं उनके ऊपर लगाई गई है। वहां पर एक कटोरा दिखाई दे रहा है नीचे फर्श दिखाई दे रहा है।

ये उसके अंदर एक बिल्ली लगी हुई है आगे एक स्कूटी दिख रही हैरास्ते पे कार आते दिखाई दे रही है वहा कुछ कचड़ा दिखाई दे रहा है।